यह कृष्णा भगवान का स्टेचू है।

यह बच्चा व्हाइट प्रिंटेड शर्ट पहना हुआ है और ब्लू जीन्स और बहुत फूल है इस गार्डेन में।

और नारियल का पेड़ है उसको भी लाइट से सजाया गया है और डाइनिंग टेबल को भी अच्छे से सजाया गया है वाइट कपड़ो से और प्रिंटेड से ।

दो लेबर गमछा बंधे हुए रेड टी-शर्ट पहने हुए है एक लड़का येल्लो टी-शर्ट पहने हुए है और दो मजदूर अपने सर पे ढो रहे है ।

और यह नहर बहुत बड़ा है और इसका पानी नीला-नीला है और दो कार्टून में ही ए रखे हुए हैं ये लोग जिसमें मछली पकड़ के रखेंगे इसमें जमा कर --

यह ऑटो स्टैंड है यहाँ पे लोग गाड़ी का वेट कर रहे हैं सवारी सब --

एस.बी.आई. बैंक का ब्रांच है स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ।

यह एक मॉल है यहाँ पे एक पोस्टर टंगा हुआ हुआ है रेयमंड का एथनिक रेयमंड और यहाँ पे सिनेमा हॉल का टिकट काउंटर है बोक्सोफ्फिस लिखा हुआ है।

यह मुजफ्फरपुर का अतिथि रेस्टोरेंट है और यह बहुत बड़ा है।

यह बैशाली पेस्ट्री शॉप है और यह काफ़ी अच्छा है इसकी पेस्ट्री भी काफ़ी अच्छी होती है और इसकी ऊपर वैशाली कॉन्फरेंस हॉल है।

वह फोन चला रहा है इस सैलून के अंदर बहुत बड़ा दो मिरर लगा हुआ है।

कार्यालय अध्यक्ष है अन्य अभियंता भवन निर्माण विभाग जब तक हो यह ग्रीन कलर के बॉडी पे वाइट पेंट से लिखा हुआ है ।